और बोहोत सारे घर दिखाई दे रहै है और कुछ कार भी दिखाई दे रही है।

यहाँ एक जिम है और जिम के अंदर तीन ट्रेडमिल मशीने दिखाई दे रही है।

उसके आस -पास बहोत सारी घास भी दिखाई दे रही हैं।

यह एक जगह है और यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है |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

यह एक जगह है।